फ्रंट में एक चेयर है। चेयर के पास एक सर खड़े दिखाई दे रहे हैं जिनके पास व्हाइट बोर्ड रखा हुआ है।

यहाँ पर हमें एक बोहोत बड़ा रूम दिखाई दे रहा है। रूम बोहोत ही अच्छे तरह से डेकोरेट किया गया है। इसकी दीवाल पे पिंक कलर पेंट है। पीछे एक काउन्टर है जिसपे कुछ सामान है और दीवाल पर एक टीवी लगी है।

सामने एक टेबल पे कुछ फाइलें मोबाइल और पानी की बोतल दिखाई दे रही है।

यहाँ पर हमें एक बहुत बड़ा जो है ब्रिज दिखाई दे रहा है ब्रिज के ऊपर हमें कुछ गाड़ियां दिखाई दे रही हैं दो ब्रिज दिख रहे हैं।

यहाँ हमें कुछ ड्राइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं स्कूल के दीवार पर रेड एंड वाइट कलर पेंट है और हमें दो टीचर्स खड़े दिखाई दे रही है।